आसा बिल्डिंग दिख रहा है साइड में इस साइड में रोड दिख रहा है जिसमें कुछ लोग बाइक पर जा रहें हैं एक ऑटो आ रही है जो येलो एंड ब्लैक कलर की है कुछ लोग चलकर भी आ रहें हैं जिनके हाथ में थैला है --

अ सारे हैंगर मे टंगे है बीच मे कुछ लोग-लोग है जो की देख रहे है जिन्हो ने जाकेट पहना है एक के हाथ मे हैलमेट है जिसने ब्लैक कलर का कपड़ा----

बड़े-बड़े से ट्रैक्टर के चक्के रखे हुए हैं जो की ब्लैक कलर के हैं सामने में ऊपर में जिस्ता लगा हुआ है उसके सामने में पतली-पतली से खूंटी लगी हुई है सामने एक बोर्ड है बड़ा-सा जो की जिसमें ब्लू कलर लगा हुआ है।

जिसमें लिखा वाइट कलर में है और उसमें चक्का का फोटो भी है दूर में कुछ बाइक है कुछ दुकानें दिख रही हैं जो दो तल्ला हैं।

पूरे बाँस की बनी हुई है थाक थाक सी नीचे में एक बाइक रखा है जो की काले रंग का है ऊपर आसमान व्हाइट और हल्का ब्लू है और इस साइड में एक घर दिख रहा है जो पिंक है।